और यह अंदर साइड मंदिर और ब अ बैकग्राउंड जो है इसका या बाउंड्री जो है वो लोहे से घिरा हुआ है और यहाँ फ़ोटो खिचाने के लिए बहोत ही सुंदर जगह है ।

यह एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा दिखाई पड़ रहा है जहां सामने में दो महिलाएं हाथ में सैनिटाइजर लेके खड़ी हुई है चेहरे पर मास्क लगाई गई है और अंदर में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं चेहरे पर मास्क लगा के और ऊपर में ए_सी लगा हुआ है जो कि --

यह रोड या चित्र कमला कॉलेज का है जिसके सामने गुरु नानक स्कूल भी है।

यह बाजु में कचरे जमे हुए हैं बहुत सारे लेकिन तालाब बहुत अच्छा दिख रहा है जिसके बाजु में सीढियाँ है जोकि इन्सान वहां जा सकते हैं चल सकता है या दिया जला सकता है वो अपना काम उधर बैठ के कर सकता है।

यह एक छोटा सा गार्डन है जिसमें फुल हरियाली भरे हुए हैं जिसमें गेंदे का फुल खासकर दिखाई दे रहा है गेंदे के फुल इसमें पीले रंग के है ऑरेंज कलर के है और यहाँ साइड में एक और फुल का पेड़ है जो कि इस गार्डन की शोभा और बढ़ा रहा है।

ये कोचिंग क्लास का चित्र है जहाँ की कुर्सिया टेबल बहोत ही अच्छे तरह से रखी गयी है बनाई गयी है यहाँ पर प्रोजेक्टर भी रखा गया है यहाँ पंखा की सुविधा है यहाँ लाइट --

के येल्लो कलर और ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है और यह बहुत ही अ अच्छा और हरियाली लम्बे लम्बे पेड़ों से भरा हुआ है आगे में गार्डन एरिया है हरियाली है और उधर खम्बे लगे हुए हैं एक प्लेग्राउंड है आगे में एक कार खड़ा है और यह बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक कॉम्प्लेक्स की है जिसका नाम आनंद वाटिका है यह कॉम्प्लेक्स चार फ्लोर का बना हुआ है ऊपर में टेरेस है और ये ऑरेंज और वाइट कलर से पेंट किया गया है।

सुंदर चित्रकारी की गई है जिस में पांच से व्यक्ति बैठे है हाथ पर अम्म गायक यंत्र लेकर बैठे है इस पर इस के बैकग्राउंड पे मछली का चित्र बना हुआ है जोकि कांच के अंदर या कांच से घेरा हुआ है पूरा और ये बहुत ही सुंदर और कलरफुल दिखाई पड़ रहा है ।